और बहुत सारी सीढ़ियां लगी हुई हैं और बहुत बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं एक काउच भी लगी हुई है ट्यूबलाइट्स भी लगी हुई है।

हमें यहां एक दो किताब दिखाई दे रही है जिसपे तरह तरह की किताबें पड़ी हुई है पेन भी पड़ी हुई है बड़ी-बड़ी सीनरी भी पड़ी हुई है।

ये मुझे तो ये एक ग्राउंड नजर आ रहा है जिसके अंदर आदमी भी खेल रहे हैं बैठ रहे हैं।

अ तीन बसे नजर आ रही है और एक टेंपू भी नजर आ रहा है एक--

मुझे तो यहां एक बहोत बड़ा होटल दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है चिरंजीव हॉस्पिटल दिखाई दे जिसका नाम --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

इसके अंदर बहुत सारी लाइट भी दिखाई दे रही है।

मुझे नया एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है कुछ आदमी सब्जी ले रहे हैं कुछ दुकानदार सब्जी दे रहे हैं जिसके पीछे --

और एक दुकान का टायर फट रहा है और एक सामन खुल रहा है एक सामन बंद हो रहा है और एक --

पुलिस की गाड़ी दिख रही है और एक पुलिस वाला दिख रहा है एक --

सामने बहुत बड़ी चेयर पड़ी है एक आदमी बैठा हुआ है टेबल के ऊपर और मेज के ऊपर टेबल बना रहा है बिक के उठा रहा है और यह सामने बहुत बड़ा --

मुझे ऐसा लगता है की यहां एक--

और बहोत सारे लोग इधर खड़ी हुई है मुझे ऐसा लगता है आतंकवादी है पाकिस्तान से आए हुए हैं।

मुझे तो यहां बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं और एक फैन भी दिखाई दे रहा है सारे आदमी टी_वी देख रहे हैं टी_वी में पता नहीं क्या मैच देख रहे हैं शायद।